--साइड में कुछ अ गाड़िया जाते हुए नज़र आ रही है कुछ लोग रुके हुए भी है बाइक खड़ी हुई देख रही है आसमान छाया हुआ है यहाँ बारिश हुई है।

कुछ लोग मंदिर के गेट के पास खड़े हुए है सामने--

सामने कुछ गाड़िया खड़ी हुई दिख रही है यहाँ नीचे पेड़ की परछाई भी दिख रही है यह येलो कलर की बिल्डिंग है ऊपर का रेलू डले हुए है।

बिल्डिंग के ऊपर वाइट कलर पूता हुआ है साइड में भी गेट लगा हुआ है यहाँ सारे अ शटर एक जैसे है येलो कलर के--

घर छोटा सा बना गया है उसके पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहें हैं मंदिर के साइड में एक रस्सी बंधी हुई दिख रही है मंदिर में एक छोटी सी खिड़की दिख रही है।

और एक तीन फ्लौर मंजिल बनाई गई है इसको लाइटिंग से पूरा सजाया गया है नीचे बहोत अच्छा गेट बनाया गया है।

यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है जिसने गोगल और कैप लगाया है वाइट कलर वाइट कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है।

अन्दर में शोकेस में बहुत सारा सामान भी दिख रहा है यहाँ वाइट कलर की एक बोरी रखी हुई है।